यह एक सब्जी मंडी के अंदर का इमेज है जहा पे बहुत सारे फल वगैरा बिकते हुए देखे जा सकते है ज्यादा तर फलों को केरेट के ऊपर करके रखा गया--

अगल-बगल मे और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे है यह देखने मे बहुत ही सुंदर लग रहा है सामने एक बड़ा सा पैड लगा हुआ देखा जा सकता है जो की बहुत ही सुंदर है

यहाँ पर और भी कुछ पेड वगैरा देखे जा सकते है उपर निला आकाश दिखाई दे रहा है।

ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सीढिया बनाई गई हे सामने शीशे के दरवाजे लगाए गए है इसकी दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा देखा जा सकता है यह देखने मे--

सामने भी कुछ फल वगैरा रखे गये है और उपर कुछ लाईटे वगैरा लगाई गई है जो देखने मे बहुत सुंदर लग रही है अगल बगल के कई लोग भी आते जाते हुए साफतौर से देखे जा सकते है।

बाहर मे बहुत सारे सामायन टाँगे टांगी गई है जो देखने मे काफी अच्छी लग रही है सामने एक स्कूटर खड़ी की हुई है।

उपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है और ये देखने मे बहुत सुंदर व आकर्षक लग रहा है उपर नीला आकाश है।

यहा पर कई लोगों को एक साथ देखा जा रहा है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है अगल बगल मे कुछ पेड़ लगे हुए है और कुछ लोगों भी देखा जा सकता है।

यहा पर एक बहुत बड़ी सी कुछ बेढ़ने के लिए चेयर्स वगैरा बनाई गई है जो देखने मे बहुत ही खूबसूरत लग रही है।